केटच ktouch के परिचय पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप केटच और केटच interface के बारे में सीखेंगे
आप सीखेंगे कि:
कम्प्यूटर कीबोर्ड पर जिसमें अंग्रेज़ी अक्षर हैं स्पष्टतः तेज़ी और निपुणता से टाइप कैसे करें
आप यह भी सीखेंगे कि
हर बार जब आप type करते हैं बिना keyboard पर देख कर type कैसे करें
केटच क्या है
केteaches एक typing tutor है यह आपको सिखाता है कि कैसे online संवादात्मक keyboard का इस्तेमाल करके type करें
आप अपनी खुद की गति से typing सीख सकते हैं
आप धीरेधीरे विशुद्धता के साथ अपनी typing रफ्तार बढ़ा सकते हैं
केटच में आपके अभ्यास के लिए भिन्न कठिनता के स्तर में उपदेश या typing नमूने भी हैं
यहाँ हम उबंटू लिनक्स 1110 पर केटच 171 का इस्तेमाल कर रहे हैं
आप उबंटू सॉफ्टवेयर centre का इस्तेमाल करके केटच संस्थापन कर सकते हैं
उबंटू सॉफ्टवेयर centre पर अधिक जानकारी के लिए इस website पर उबंटू लिनक्स tutorials देखें
चलिए केटच खोलते हैं
सबसे पहले dash home पर click करें जो आपके computer desktop पर सबसे ऊपर बाएं कोने में गोल button है
search box प्रदर्शित होता है
search box में ktouch type करें
search box के नीचे ktouch icon दिखता है इस पर click करें
केthe window प्रदर्शित होती है
वैकल्पिक रूप से आप terminal का इस्तेमाल करके केटच खोल सकते हैं
terminal खोलने के लिए ctrl और alt और t बटनों को एक साथ दबाएँ
केto खोलने के लिए terminal में command ktouch type करें और enter दबाएँ
अब अपने आप को केटच interface से परिचित करते हैं
मुख्य menu में file training settings और help menus हैं
typing का अभ्यास करने के लिए start new session पर click करके एक new session खोलें
टाइप करते समय रुकने के लिए pause session पर click करें
अपनी typing उन्नति जानने के लिए lecture statistics पर click करें
level जटिलता का स्तर दर्शाता है typing के समय उपयोगित कीज के मामले में
speed दर्शाता है कि एक minute में आप कितने अक्षर type कर सकते हैं
correctness संकेतक typing की विशुद्धता के प्रतिशत को दर्शाता है
new characters in this level field अक्षरों को दर्शाता है जिनकी आपको चुनित स्तर पर अभ्यास करने की आवश्यकता है
teachers line उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें टाइप करना है
students line अक्षरों को दर्शाता है जो keyboard का इस्तेमाल करके आपके द्वारा टाइप किये गये हैं
keyboard centre में प्रदर्शित होता है
keyboard की पहली line संख्या विशेष अक्षर और backspace की दर्शाती है
टाइप key गये अक्षरों को मिटाने के लिए backspace की दबाएँ
keyboard की दूसरी line में वर्णमाला कुछ विशेष अक्षर और tab की सम्मिलित हैं
keyboard की तीसरी line में वर्णमाला colon semicolon और caps lock की हैं
टाइप करते समय अगली line में जाने के लिए enter की दबाएँ
बड़े अक्षरों में type करने के लिए caps lock की दबाएँ
keyboard की चौथी line में वर्णमाला विशेष अक्षर और shift की सम्मिलित हैं
बड़े अक्षरों में type करने के लिए किसी भी वर्णमाला की को shift की के साथ दबाएँ
की में ऊपर दिए गये अक्षर को type करने के लिए shift की को किसी भी दूसरी की के साथ दबाएँ
उदाहरणस्वरुप संख्या 1 वाले बटन में ऊपर विस्मयादिबोधकचिह्न है विस्मयादिबोधकचिह्न को टाइप करने के लिए shift की को 1 के साथ दबाएँ
keyboard की पांचवी line में ctrl alt और function की सम्मिलित हैं यह space bar को भी सम्मिलित करता है
अब देखते हैं यदि यहाँ केटच keyboard laptop keyboard और desktop keyboard में कोई भिन्नता है
ध्यान दें कि केटच keyboard और laptops और desktops में इस्तेमाल किये जाने वाले keyboards समान हैं
अब keyboard पर अपनी उँगलियों का सही क्रम स्थान देखते हैं
इस स्लाइड पर देखें
यह उँगलियाँ और उनके नाम दर्शाता है
बाएँ से दायें ओर उँगलियों के named हैं:
ring finger
index finger और
अपने keyboard पर अपना बायाँ हाथ keyboard की बायीं तरफ रखें
यह सुनिश्चित कर लें कि छोटी ऊँगली अक्षर a पर हो
अनामिका अक्षर s पर हो
मध्यमा अक्षर d पर हो
तर्जनी अखर f पर हो
अब अपना दायाँ हाथ keyboard की दायीं तरफ रखें
सुनिश्चित कर लें कि छोटी ऊँगली colon/सेमीकॉलन की पर हो
अनामिका अक्षर l पर हो
मध्यमा अक्षर k पर हो
तर्जनी अक्षर j पर हो
space bar को दबाने के लिए अपना दायाँ अंगूठा इस्तेमाल करें
पहली बार जब आप केthe खोलते हैं teachers line default text दर्शाती है
यह text निर्देशों को सूचीबद्ध करता है कि कैसे पाठ को चुनें और कैसे पाठों की typing शुरू करें
इस tutorial के उद्देश्यों के लिए हम default text टाइप करना छोड़ सकते हैं और lecture चुनें
हालाँकि आप इस tutorial को रोक सकते हैं और default text type कर सकते हैं
अब पाठों को टाइप करने के लिए lecture चुनते हैं
मुख्य menu से file चुनें open lecture पर click करें
select training lecture filek touch dialog box प्रदर्शित होता है
निम्न folder path को browse करें root> usr> share> kde4> apps> ktouch
english ktouch xml चुनें और open पर click करें
ध्यान दें कि teachers line अब अक्षरों के अन्य समूह को दर्शाता है
अब typing शुरू करें
default रूप से level 1 निर्धारित है और speed शून्य पर निर्धारित है
इस level में new अक्षर वो अक्षर प्रदर्शित हैं जिन्हें हम इस level में सीखेंगे
ध्यान दें कि cursor students line पर है
अपने keyboard का इस्तेमाल करके teacher line में प्रदर्शित अक्षरों को type करें
ध्यान दें जैसे ही हम type करते हैं characters students line में प्रदर्शित होते हैं
अब speed field में देखें
जैसे ही आप type करते हैं संख्या आपके type करने की गति पर आधारित बढ़ती या घटती है
यदि आप टाइप करना रोक देते हैं speed गिनती घटती है
अब संख्या सात और आठ type करते हैं जोकि teachers line में प्रदर्शित नहीं हैं
student line लाल हो गयी है
क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि हमने गलत टाइप किया है या typing में कुछ गलती की है
इसे मिटा दें और typing पूरी करें
जब आप line के अंत में पहुँचते हैं दूसरी line पर जाने के लिए enter की दबाएँ
ध्यान दें teachers line अब type करने के लिए अक्षरों का दूसरा समूह दर्शाती है
students line टाइप किये हुए text से साफ़ हो गयी है
अब देखते हैं हमने कितना सही टाइप किया
correctness field आपकी typing की विशुद्धता का प्रतिशत दर्शाता है उदाहरणस्वरुप हो सकता है यह 80 प्रतिशत दर्शाए
हमने अपना पहला typing पाठ पूरा कर लिया
पहले कम it से ठीकठीक type करना सीखने के लिए यह सही पद्धति है
एक बार जब हम बिना गलतियों के ठीकठीक type करना सीख लेते हैं हम अपनी typing की गति बढ़ा सकते हैं
एक नया typing session शुरू करते हैं
start new session पर click करें
start new training sessionk touch dialog box में start from first level पर click करें
आप क्या देखते हैं
teachers line में अक्षरों का एक समूह प्रदर्शित होता है
students line सभी अक्षरों से साफ़ है और खाली है
typing शुरू करें
अभ्यास करते समय हो सकता है आप रुकना चाहें और बाद में फिर से शुरू करना चाहें
आप अपना session कैसे रोकेंगे
pause session पर click करें
ध्यान दें कि गति कम नहीं हुई
स्मरण हो कि यह कम होता है जब हम पहले का session रोके बिना typing रोकें
typing फिर से करने के लिए teachers line में प्रदर्शित अगला अक्षर या शब्द type करें
एक बार हम typing पूरी कर लेते हैं हम correctness field जाँचेंगे यह typing की विशुद्धता दर्शाता है
इसी के साथ हम केटच पर इस tutorial की समाप्ति की ओर आ गये हैं
इस tutorial में हमने केटच interface के बारे में सीखा हमने यह भी सीखा कि कैसे: board पर अपनी उँगलियाँ रखें
teachers line को देखकर type करें और अपना पहला typing सेशन पूर्ण किया
यहाँ आपके लिए एक नियतकार्य है
केटच खोलें level 1 में typing सेशन को पूरा करें इस level के साथ typing का अभ्यास करें
कीज के लिए सही उँगलियों का इस्तेमाल करना याद रखें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
आई आई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आप से विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद